दोनों है वो सेफ्टी बेल्ट लगाये हुए हैं सेफ्टी ट्यूब लगाए हुए हैं और सेफ्टी ट्यूब के साथ जो है वो बहुत सुकून ते है और इसी से जो है --

वो चेयर लेके वहां बैठते हैं और रेस्टोरेंट में अपना एन्जॉय करते हैं और --